ये अगल-बगल में घासे बहुत दिखाई दे रही हैं।

विश्व इंटर मह महा विद्यालय है जो कि यहाँ --

जो की यहाँ वातावरण --

गोभी और आलू --

ये कई प्रकार के चीज यहाँ बेचता है यह एक दुकान है।

दू-चक्के एवं अगल-बगल में बोलेरो --

जो की छोटे-छोटे बहुत बच्चे योगा कर --